इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी गुरुद्वारा का है।

साधना करने के लिए तथा पंखे लगे हुए हैं।

यहां कार कबाड़खाना है जिसमें कि बहुत सारे कारस खड़ी हुई हैं तथा आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं जो--

बाइक्स खड़ी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए--

तथा जीने भी बने हुए हैं इलेक्ट्रिक जीने तथा आस पास बहुत से लाइट्स लगी हुई है टाइल्स पत्थर भी--